यहाँ पर चारो तरफ ढ़ेर सारे बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है और एग --

इस दफ्तर के सामने एक सड़क भी है यहाँ पर हर वक्त लोग आता-जाता रहता है इस दफ्तर में सरकारी कामें होते हैं।

इ हमारे इलाका का एक स्कूल है ऐ स्कूल बहुत ही बड़ा है इ स्कूल में एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट --

ये हमारे इलाका का एक फार्म है | ये फार्म बहुत ही बड़ा है | इस फार्म के अंदर बिस गाय है | यहाँ --

दो लोग संभालता है यहाँ पर गाना रिकॉर्ड करने का हर एक समान मौजूद है।

ये हमारे इलाका का एक ज़ू है | यहाँ पर रेपटाइल का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर ढेर सारे क्रोकोडाइल देखा जाता। ये क्रोकोडाइल अभी रेस्ट ले रहा है।

यहां पर क्रोकोडाइल्स को रहने के लिए एक स्विमिंग भी किया गया है इस स्विमिंग पूल का पानी --

ये हमारे इलाका का एक पार्क है | ये पार्क बहुत ही सुन्दर है | इस पार्क के अंदर एक गेस्ट हाउस भी है | यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं |

ये हमारे इलाका का एक सड़क है | इस सड़क के किनारे पे ढेर सारे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और हर एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में ढेर सारे दुकाने भी है |

यहाँ पर बैंक ए.टी.एम. छोटे-छोटे दुकान सब कुछ है यहाँ पर हर वक्त भीड़ जमे रहता है इला --

ये हमारे इलाका का एक क्लैप का ग्राउंड है इस ग्राउंड में इलाका का लड़का लोग --

कागज काट के हाथो से कुछ बना रहा है यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन हो रहा है।

और गेट के एकदम ऊपर पे भगवान जी का एक मूर्ति भी है यहाँ पर फुटपाथ में ढ़ेर सारे छोटे-छोटे दुकानें भी है।

ये हमारे इलाका का एक सड़क है | इस सड़क के सामने एक बड़ा सा मीनार है | यहाँ पर --

ये हमारे इलाके का एक दुकान है यहाँ पर खेलने का हर तरह का सामान मिलता है यहाँ पर खेलने के सामान के साथ-साथ टॉफीज़ भी मिलता है।

बैग्स वगेरा मिल जाता है इलाका का लोग इस दुकान से --

और जिम के लिए ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट भी हे यहाँ पर दो सौ लोग जिम प्रैक्टिस करता हे।

ये हमारे इलाका का एक छोटा सा स्टाल है | इस स्टाल राखी के पहले बनाया जाता है | यहाँ पर ढेर सारे राखी मिलता है | एक लोग ये दुकान संभालता है |

राखी के सीजन में इस दुकान में बहुत ही भीड़ होता है एक लोग ये दुकान संभालता है।

यहाँ पर हर वक्त बीस बस स्टैंड रहता है यहाँ से दूर-दूर से लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं।

ये एक अर्बन एरिया है।

ये हमारे इलाका का एक दुकान है ऐ दुकान बहुत ही बड़ा है यहाँ पर चार लोग दुकान संभालता है यहाँ पर --

यहाँ पर छोटे-छोटे खाने का भी दुकाने है यहां पर जात्रियों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए वो लोग मिट्टी पे ही बैठ जाता है।

का मीनार बहुत ही खूबसूरत है।

ये हमारे इलाके का एक बैंक है ये एक यूनियन बैंक है इस बैंक में इलाका का लोग आते-जाते रहता है।

एक टिकट काउंटर भी है ऐ हॉल बहुत ही बड़ा है और एयर कंडीशनर भी है ईहाँ पर हर वक़्त --